इसमें हम एक खुले आसमान को देख सकते हैं ऊपर की तरफ और नीचे की हम बात करें तो नीचे हम यहाँ पे पौधों को और बड़े-बड़े पेड़ों को देख सकते हैं हरे-भरे से घने और से नजर आ रहे हैं हमें नीचे।

पिक्चर में पूल को देख सकते हैं जिसमें पानी भरा हुआ है बहुत सारा ओर ब्लू कलर का पानी है जो कि काफी प्यारा लग रहा है उसमें उछल पूछल भी हो रही है।

पिक्चर में हम देख पा रहे हैं कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है क्योंकि वहां पे बहुत सारे पौधे और नजर आ रहे हैं हमें और दूसरी तरफ पूरी जमीन जो है वो घासों से भरी पड़ी है।

पिक्चर मे हम बात करे तो यहां पे हम देख सकते हैं आप हमें चारों तरफ ग्रीनरी नजर आ रही है हरी-भरी सी और जहां पे कुछ पौधे और घास वगैरह नजर आ रही है और यहां पे हिरण वगैरह घासों को चरते हुए पत्तों को चरते हुए देख सकते हैं हम --

साइड में दूसरी तरफ हम देख पा रहें हैं वाइट कलर की एक बिल्डिंग को जिसमे हमें विंडोज नज़र आ रहीं हैं और लाल रंग के कुछ स्पॉट बने --

देख सकते है एक गली को गली में कुछ लोगो को सब्जी वगेरा बेचते हुए जिनके पास जैसे कुछ दुकानदार वगेरा है।

और गोल गोल से कुछ मीटर वगेरा रखे हुए है और नीचे बॉक्स में उसकी तार जा रही है पीछे की तरफ हम तारो पे सूखते हुए कपडे नज़र दिख --